यहां एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

और एक घर दिखाई दे रहा है।

एक आदमी पीछे दिखाई दे रहा है।

लाइटस दिखाई दे रही है एक मैट दिखाई दे रहा है।

यह एक ज्वेलरी की दुकान दिखाई--

यह एक सिटिंग रूम दिखाई दे रहा है।

और गाड़ियां दिखाई दे रही है।

कुछ गमले दिखाई दे रहे है।